भाई ये तो कोई मतलब कि यहां तो कोई स्टेशन है और यहां देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है बैठने की और यहां दुकानें भी खुली हुई है जो कि यहां सामान मिल जाता है। का सामान है देखो जूते बेच रहा है।

जो कि काफी बड़ी दुकान है ये और यहाँ से कोई सी भी बुक ले लेते हैं और काफी भीड़ रहती है इस बुकसेलर की दुकान पे सारी बुकें मिलती हैं।

काफी सारे लोग हैं और ये चर्च के गुरु दिखते हैं दोनों और महिलाए भी है साथ में क्योंकि --

और इन्होंने कितनी गहरी खोदी है और ये देखो यहां अब ये पिलर को गाड़ दें।

और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे।

यह एअरपोर्ट का अड्डा है।

कछुए देखो पानी में से निकल के --

और जब कि इस काटे को हम जमीन में गाड़ के और अपने नाव को रोक देते हैं इससे कि नाव जा नहीं पाए।

देखो यह हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है।

जो ऊँचे पहाड़ पर हए और इसका चश्मा भी काफी अच्छा लग रहा है।

मेरे घर की अलवारी कितनी अच्छी है।

यह देखो फैक्ट्री कितनी अच्छी है और इसने पूरी फैक्ट्री को तीन डलवा रखी है।

और ये कितनी अच्छी लग रही है रेड कलर की --